लाइट लाइटिंग एंड थेरे अरे गुड लाइटिंग थे सीट एट द कलर ऑफ़ द सेट की ऑफ़ लेंथ

मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिखा दे हैंलोग कार से निकलते हुए भी देखा जा सकते हैं जब आज मौसम और रोड भी साफ दिखा।